भरा हुआ हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ।

जहां पे बहुत सारा स्‍कूटी टेंपू इन सब का टेंपू ही लगा हुआ है।

मयूरी ही टाईप में है।

और पता नहीं क्‍या चीज कोंचिग टाईप का लग रहा है कोंचिग हैं।

पता नहीं छोटा सा हॉस्पिटल है उसमें डॉक्‍टर आता है।

अब बोर्ड यहाँ टांग दिया है कि नर्सिग होम है। डॉक्टर राज़ी भी हैं ।

नदी है जिसके ऊपर से बोहुत सारी गई हु --

उसके अंदर में कुछ लोग तो बैठे हुए हैं पता नहीं पे बैठे --

ई साईड का तीन सौ पचपन उसका तीन सौ पचहत्तर इसका तीन सौ निन्‍यानवे हर एक टाईप का हर एक रेट लिख दिया गया है हर एक बोरा में।

पुल के पास पहुंच गया ये पानी इतना भरा हुआ है सो --

सुबह-सुबह टाइम होगा कुछ यहां अंकल आंटी सब उधर बैठ के अपना देख रहे है।